रोड दिखाई दे रही है जिसके ठीक बगल में बड़ा सा बैनर लगा हुआ है जो कि नीले रंग का है जिस पर हिन्दी में कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है बैनर के ठीक पीछे तरफ एक बाउन्ड्री वॉल बनी हुई है जिसके बीच बीच में लोहे कि जाली लगी हुई है।